यहां एक बैंक है घेरा लगा हुआ है सामने एक घड़ी है यहां पर कुर्सी और लगा हुआ है आदमी लोग सब बैठे है साफ-सफाई बैंक के आगे एकदम अच्छा लग रहा है सही है।

यहां एक फील्ड जैसा दिख रहा है। यहां लगता है कोई घूमने वूमने आए हुए हैं हाथ में कॉफी लिया हुआ है। यहां एक घर है बगीचा है घास है नीला-नीला आसमान है सही लग रहा है अच्छा लग रहा है दिखने में।